ये एक सिटी है और यहाँ पर बोहोत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पर हर भी बोहोत सारे है और बिल्डिंग बने हुए है और कंपनियाँ भी बनी हुई है ।